खुला आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर से हमें पतली धार से आती हुई --

लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर हमें कुछ लाइट्स के वायर्स के परछाई जैसी --